जैसा कि हम देख पा रहे हैं रात का समय दिख रहा है और यहां गेट के पास बहुत सारे फूलों से सजाया हुआ है।

और एक कॉफी के कप में च एक चम्मच रखा हुआ है और एक चम्मच नीचे रखा हुआ है जो काले रंग का है दोनों --

दोनों साइड कुछ पेपर रखे हुए जो सफेद कलर के हैं और उस पे ऑरेंज कलर का कुछ बना हुआ है।

और एक नजर आ रहा है जिस पे कपड़ा पेहनाया हुआ है पीछे ए पीछे बहुत सारे--

जैसा कि हम देख पा रहे हैं ये दिन का समय दिख रहा है और यहां यहां एक बोर्ड लगा हुआ है जिस पे पीले रंग से शिवम् लिखा हुआ है उसके ऊपर छोटा सा व्हाइट रंग का --

और दो चेयर रखे जो काले और हरे रंग का है उसपे एक आदमी बैठा हुआ है।

जैसा कि मैं देख पा रही हूं दिन का समय दिख रहा है और यहां एक आदमी दिख रहा है जिसने काले रंग का कुर्ता पहन रखा है और व्हाइट रंग का पैजामा पहन रखा है उसके साम --

जैसा कि हम देख पा रहे है ये दिन का समय दिख रहा है यहाँ एक बिल्डिंग नजर आ रही है जिसके ऊपर एक बोर्ड लगा हुआ है जिसपे ट्रेड्स लिखा हुआ है सामने की ओर सीढ़ियाँ हैं।

जैसा कि हम देख पा रहे है दिन का समय दिख रहा है यहाँ एक टेबल है जिसपे बहुत बड़ी मछली रखी हुई है दूसरे साइड मे और एक टेबल है जिसपे एक पानी--

गेट दिख रहा हैं और सामने बाहर की ओर कुछ पत्ते नजर आ रहे हैं हरे रंग के।

जैसा कि हम देख पा रहे हैं यह दिन का समय दिख रहा है यहां एक बोर्ड दिख रहा है जिस के ऊपर ब्लू कलर से अंबिका ड्रेस लिखा हुआ है और लाल रंग से अंबिका ड्रेस लिखा हुआ है और --

एक पर्दा नजर आ रहा है जो लगा हुआ है और सामने की ओर एक कांच का बॉक्स है जिसमें बहुत सारे--

और उसके सामने और एक लेडी दिख रही है जिन्हों का हाथ और पैर दिख रहा है जिसने लाल रंग की चूड़ी पहन रखी --

और एक कांच का गेट है जिस पे फूलों से सजाया हुआ है और बहुत सारे पिंक और वाइट मे बलून लगे हुये है उसके अन्दर कुछ सम--